बीच बीच में पिंक कलर है और ऊपर से जो है पेड़ की टहनियां दिख रही है और इसके पीछे भी एक--

ये मुझे एक किचन दिखाई दे रहा है और यहां पर जो है--

वाइट कलर की टाइल्स लगी हुई है और सिंक भी लगा हुआ है।

और यहां पे जो है बहुत --

ये मुझे एक प्रकार की शॉप दिख रही है।

फ्लावर्स भी दिख रहे हैं जो थोड़े बहोत ग्रीन कलर के हैं।

और यहां की दिवार जो है वाइट कलर की हैं।

यहां पर मुझे कुछ बसे दिखाई दे रही है।

प्रोडक्ट भी दिखाई दे रहा हैं जो--

यहां पर ग्रीन कलर का मैट है और--

यहां पर मुझे बहुत सी चीजें ग्रे कलर और--

बूरे कलर की दिखाई दे रही हैं।

पिंक कलर में लिखा गया है।

और इनके पीछे जो है।

कुर्सियां भी कहीं कहीं है और--

एक बिल्डिंग दिखाइ दे रही है जो भूरे कलर की है और--

और इसकी साइड में दो स्कूटीयां लगी हुई है।

सीताराम और लक्ष्मण की जो है।

और ग्रीन बॉर्डर में लगा है।

लोग भी दिख रहे हैं।

यहां पे दूर-दूर से जो है पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

एक टेबल भी दिख रहा है और--

और व्हाइट कलर की टाइल्स लगी हुई है।

यहां पर सफेद कलर की टाइल्स लगी हुई है।

नीचे से यह लकड़ी का बना--

बादल भी एक तो है।

सफेद कलर की टी-शर्ट पहनी है।

यहां पर मुझे सीढ़ियों से--

भूरे कलर का गेट बनाया है।

यहां पर मुझे बहुत सी--